मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत सारी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं।

मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और मुझे दो--

मुझे दो शेरवानी दिखाई दे रही हैं और मुझे एक ब्लेजर दिखाई दे रहा है।

और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया शॉप है।

मुझे एक बेडरूम दिखाई दे रहा है और उसके अंदर मुझे एक फैन दिखाई दे रहा है।

और मुझे जीना भी दिखाई दे रहा है छत पर जाने का और मुझे पीला सा कुछ घर के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और मुझे खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अ मुझे यहां पर दो चार घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और मंच के नीचे मुझे घास दिखाई दे रही है।

एक अस्पताल दिखाई दे रहा है और मुझे एक डॉक्टर दिखाई दे रही है।

मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है और हाल के अंदर मुझे तीन लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।